यहाँ कुछ पेड़ लम्बे दिखाई दे रहे हैं यहाँ कुछ पेड़ पतले दिखाई दे रहे हैं पहाड़ काफी सुंदर दिख रहे हैं।

-- जो की जिला न्यायालय की बिल्डिंग है बिल्डिंग सफेद कलर की है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर एक लाइट लगी हुई है बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा है जो नीले कलर का है जिसमें जिला न्यायालय राजनांदगांव ग्राम लिखा हुआ है यहां पर काफी सारी कार दिख रही हैं।

यहाँ पर एक कार नजर आ रही है सामने एक रोड नजर आ रही है यहाँ पर कुछ खंबे नजर आ रहे हैं ऊपर कुछ तार नजर आ रहा है सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

ज़िम है ज़िम काफी बड़ी दिखाई दे रही है ज़िम विम पर तीन शर्ट लगा हुआ है ज़िम में लाइट दिखाई दे रही है सामने एक बैंच रखी हुई है जो की रेड कलर की है यहाँ पर काफी सारी मशीन है सभी अलग- अलग प्रकार की है य --

बिल्डिंग है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड में निखिल मोबाइल लिखा हुआ है अंदर मोबाइल की शॉप दिखाई दे रही--

यहाँ पर कुछ गेट दिखाई दे रहा है गेट लाल कलर का है यहाँ पर एक टावर दिखाई दे रहा है यहाँ पास बिजली का तार नज़र आ रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहा है।

सामने एक पॉलिथीन लगी हुई है अंदर काफी सारी दवाई रखी हुई है सामने एक चैनल गेट दिख रहा है बाहर एक स्कूटी नज़र आ रही है।